यह मुझे एक झूला दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत ही संदर झूला दिखाई दे रहा है जो की बहुत है अट्रेटिव लग रहा है और इस जुले में मुझे एक रेल गाड़ी की तरह भी दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारे लोग बेठे हुए है ।

यह मुझे एक तलाब दिखाई दे रहा है तलाब में मुझे दो नाव दिखाई दे रही है जो की रेस चल रही है इस नाव में मुझे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर बस के पीछे जो आसमान दिखाई दे रहा है वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ओ यहां पर जो रोड है ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है बस के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है और यह देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहां पर कुछ लाइट्स भी लगी हुई है जो की बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार लग रही है पूरा देखने में बहुत अच्छा नजारा लग रहा है।

यहां पर मुझे कुछ ट्रे भी दिखाई दे रही है और मशीन के सामने मुझे एक हॉल दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार लग रही है।

यहां मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है जो कि दूध दही की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पे मुझे दो शटर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लू और रेड कलर के हैं।

यहां मुझे एक डांसिंग स्टेज दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रहे है और यहां सबने एक ही स्टेप धारण कर रखी है जो कि सभी बच्चे वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए है ऊपर एक हिपहॉप का पोस्टर भी लगा हुआ है।